यहाँ पे एक पेड़ है जो काफी बड़ा है। यहाँ पे फर्श भी पड़ी हुई है जो बोहोत ही सुंदर है।

यह एक प्लेग्राउन्ड है जो काफी बड़ा है । इसमें खेलने के लिए बहोत (बहुत) चीजे़ लगी हुई है यहाँ पे नीले रंग का एक डस्ट्बिन भी रखा हुआ है।

यहाँ एक मंदिर है जो काफी बड़ा है। यहाँ पे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी तस्वीर निकलवा रहे हैं।

भूरा है यहाँ पे दो मछलियाँ बनी हुई हैं और एक चक्र भी बना हुआ है। आस-पास बोहोत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

यह एक दुकान है जिसपे बहुत सा सामान रखा हुआ है। यहाँ पे फूलों से दुकान की सजावट की गयी है।

एक मंदिर है जो देखने में बहोत सुंदर है यहाँ पे अलग-अलग प्रकार की मूर्तियाँ बनी हुई हैं खिड़की का रंग लाल है।

लगी हुई है जो काले रंग की है। होटल के पिलर पीले व लाल रंग के है। यहाँ पे होटल का दरवाजा जाल का बना हुआ है।